बकरियाँ अलग-अलग कलर की है और इधर-उधर है पीछे बहुत सारे पेड़ भी है बड़े-बड़े पेड़ है।

यहां पर एक घर के सामने दो मूर्तियां रखी गई हैं।

यह एक चाय की दुकान है जहां पर चार व्यक्ति खड़े है।

यहां पर एक टेबल पर बाइक को खड़ा किया गया है।

कुर्ती रेड कलर की है और इसमें ब्लू कलर के फूल भी हैं।